यह दिखाई दे रहा है। एक दो बाइक भी दिख रही है। ऑफिस भी बना हुआ है। पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

जिसमे एक बोर्ड टाइप का बना हुआ है जिसमे भारत पेट्रोलियम लिखा हुआ है वाइट कलर की गाड़ी दिख रही है।

खड़ी हुई हैं। एक बाइक पर एक व्यक्ति चला के जा रहा है और यहां पर गाड़ी है जो व्हाइट ब्लैक कलर की हैं।

गेट दिख रहा है और मकान की अम्म उम्म्म बाउंड्री भी है जो गजरे से सजाई गई है।

यहां पर हमें एक बोर्ड अ- हूं दिखाई दे रहा है जो बोर्ड हैं ब्लैक कलर का है और उस पर-- येलो कलर से लिखा है देशी रसोई ढा--

यहाँ पर एक गवर्नमेंट भवन दिखाई दे रहा है जिसके सामने हरे भरे पेड़ दिख रहे हैं और ग्राउंड में टाइल्स लगे हुए हैं रेड वाइट कलर के टाइल्स हैं और बिल्डिंग के दीवार पर--

यहाँ पर एक मकान में हम देख रहे है कुछ शोपे खुली हुई है जिनमें कुछ सामग्रि दिखाई दे रही हैं।